एक खम्बा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा और उसपे तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक --

बच्चो के झूले भी डले हुए दिखाई दे रहे है और एक बिल्डिंग हल्की सी बिल एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।